यह एक राशन दुकान का चित्र है।

दुकान के ऊपर चिल्ड्रन बुक्स लिखा हुआ है।

ऊपर में कुछ लाइटें भी लगाई गई है।

कुछ क्रीम पाउडर भी रखे हुए हैं।

साइड में बहुत सारे बर्थडे की टोपियां भी रखी हुई हैं।

कुछ औरत और कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

एक पंडित जी भी दिखाई दे रहा है जिसमें चश्मा पहना हुआ है।

यह एक दुकान का चित्र है जिसका नाम फन फूड लिखा हुआ है।

यह एक जंगल का चित्र है।

और रोशनी का लाल किरन दिखाई दे रहा है।

सभी ने लगभग सफेद कलर का ड्रेस पहना हुआ है।

यहां सामने नीचे में कुछ पंप रखे हुए हैं जिससे हवा भरा जाता है।

यह गैरेज का चित्र है।

और दो बेडशीट भी रखे हुए हैं।

यहां सामने में एक गेंडा दिखाई दे रहा है जो सफेद कलर का है इसके ऊपर एक बच्चा बैठा हुआ है।

बस में देख रहे हैं बस स्टैंड पे जो आगे पीछे चारों तरफ दिख रही है।

एक चेयर और एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

एक लैपटाप भी रखा हुआ है।

ऊपर में एक सफेद कलर का पंखा भी लगा हुआ है।

यह एक बगीचा का चित्र है।

यहां सामने में एक पंडाल बनाया गया है जिसे बहुत अच्छी तरह से सजाया गया है।

स्टेज के ऊपर सभी--